तीन बच्चे खड़े हुए हैं जो कि डांस कर रहे हैं। एक ने ब्लू रंग की शर्ट डाली हुई है एक ने व्हाइट कलर की ड्रेस डाली हुई है एक ने ब्लू --

एक पारक है जिस पारक में बजोत सारे लोग खड़े हैं। बोहोत लड़के खड़े हैं और खेल रहे हैं। बच्चे है और हरी घास फूस भी लगी हुई है। पेड़ भी लगे हुए है। झूले भी लगे हुए हैं। झूले पर लोग लड़के --

चित्र कूट लिखा हुआ है ।

कार्यालय कमिशनर वाणिज्यकर फतेहपुर कार्यालय कमिशनर वाणिज्यकर फतेहपुर इसकी बिल्डिंग गुलाबी कलर की है।